ये पीछे एक बड़ा सा दिवार है ऊपर जंगला लगा हुआ है।

चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है कुछ लड़कियो ने मास्क लगाए है।

मंदिर के बगल में एक बड़ा सा लकड़ी का बना हुआ है।

यहाँ सामने काफी सारे फुल पौधे दिख रहे है।

बाहर छोटी छोटी सी बॉउंड्री बनी हुई है बाहर भी दो लाइटे लगी हुई है।

पीछे बड़ा सा खम्बा दिख रहा है उस पर बिजली के तार लगे है।

निचे ज़मीन पर छोटे-छोटे घास है और मिट्टिया है दुर पर और भी पेड़ नज़र आ रहे है।

यहाँ सामने जालियाँ जैसा दरवाजा बनाया हुआ है।

और सामने काफी सारे लोग नज़र आ रहे है यहाँ काफी ऊंची ऊंची सीढ़िया बनी हुए है।

किनारे पर एक लड़का खड़ा हुए उसने कैप पेहना हुआ है यहाँ नीचे जमीन पर--

यहाँ सामने दो टीवी उप्पर दो नीचे दो सामने एक टीवी ऊपर सुपर लिखा हुए है।

किनारे पर ऊपर एलजी लिखा हुए है सामने एक टीवी चल रही है नीचे और भी काफी सामान रखे हुए है।

सामने एक बड़ा सा डीजे बॉक्स दिख रहा है यहाँ सामने ऊपर छोटा सा शर्मा ऑडियो का बोर्ड लगा हुआ है।

घास उगे हुए है हर तरफ मिट्टी ही है बिल्डिंग की खिड़कियाँ दिख रही है ऊपर छत है।